और कुछ लोग टैक्सी में बैठे हुए है बहोत सारे टैक्सी यहां पे खड़ी हुई है।

लौह के दो गेट दिखाई दे रहे हैं।

उसके बाजू में कुछ गमले रखे गए हैं जिसमें पेड़ लगाए गए।

यहां पे एक बिरयानी की शॉप दिखाई गई है जो कि यहां पे बिस्कुट नमकीन भुजिया बिस्किट--

कार्टून जैसा कुछ रखा गया है उसने लाल कैप पहनी हुई हैं।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

यहां पर बाइक और कुछ लोग खड़े हुए हैं पैसे वगैरह निकालने के--

इस पिक्चर में दिखाया गया है एक डोमिनोज जैसा रेस्टोरेंट लग रहा है।

इसमे बहुत सारे पिज्जे वगैरा बर्गर मिलते है जिसमे कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ही प्राइस मे मिलती--

इस पिक्चर में दिखाया गया यहां पे एक जिम लग रहा है और साइड में एक डंबल भी रखे गए--

पटरी पर खड़ी हुई है जो कि कोयला लेके आई हुई है। उसके एक गेट खुला हुआ है।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

इस पिक्चर में दिखाया गया यहां पर एक रेस्टोरेंट हैं।

डी_एस_एस पिज्जा के नाम से कुछ लोग बाहर बैठ के कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा खा रहे हैं कुछ लोग बैठ के साइड में बगल में बातचीत कर रहें।

मिलता है यहां पे कुछ लाइटिंग भी की गई है यहां पे एक--

इस पिक्चर के अनुसार बता दे यहां पर एक एक्सेलेरेटर है। यहां पे कुछ लोग चल रहे हैं और यहां पे एक मॉल जैसा टाइप कुछ लोग रहा है।

बैठे हुए हैं यहां पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जो की हरे हरे--

यहां पे डम्बल वगैरा दिख रहे हैं बेन्च वगैरा--

इसके आजू बाजू में कुछ फ्लावर पॉट रखे गए हैं।

यहां पर अलग अलग फूल और पोट भी दिखाई दे रहे।